साइड में एक आदमी बैठा हुआ है। उसके बाजु में और एक आदमी बैठा हुआ है। नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है। दूर में एक आदमी जा रहा है जिसने ब्लू कलर की सार्ट पहनी है।

नीचे का फर्श में ग्रीन और ब्लाक कलर है। ऊपर का सीलिंग वाइट है जिसमें बहोत सारी तारें लटक --

बड़ा सा नदी है जिसमें पानी बहोत सारा है। ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। दूर में बहोत सारे ग्रीन से पेड़ हैं।

पीछे ब्लाक कलर का बैग है। नीचे का फर्श वाइट है।

आगे में दो आदमी हैं। एक ने वाइट पहना है एक ने चेक कलर का। उसी के साइड में और तीन लोग --

जिसमें रेड कलर के पत्ते हैं। इस साइड में बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।